यहाँ पर एक सीढ़ी दिखाई दे रही है सीढ़ी काले कलर की है।

सीमेंट को भर के रखा है और सीढ़ी से ऊपर ले जा रहे है।

यहाँ पर लकड़ी के टेबल पर एक --

पेट्रोल पंप पे इंडियन इंडियन ऑइल लिखा हुआ है।

और बिजली के खम्बे लगे हुए दिखाई दे रहे है बड़े पेड लगे है।

यहाँ पर एक बडा सा मकान बना हुआ है मकान में --

ब्राउन कलर की दिखाई दे रही है जिस पर सफ़ेद शब्दों में तोमर लिखा हुआ है।

खिडकियाँ लगी हुयी है कुछ खिडकियाँ बंद है कुछ खुली है।

तीन छे बसे यहाँ पे खड़ी है।